हेलो एव्री वन ये दो बाइक है ये बाइक आ जो है --

ये एक बुक की स्टोर है यहाँ पे ऊ यू.पी.एस.सी. --

आपको एग्जामस की तैयारी के लिए यहाँ से बुक्स आपको मिल सकते हैं अच्छे दाम में अच्छे रेट में आपको मिल सकते हैं।

हेलो एवरीवन ये एक बहोत ही सुन्दर तस्वीर है आप देख सकते है यहाँ पे मेले लगे हुए ये पार्क है बहोत ही सुन्दर पार्क है।

गार्डन टाइप का पार्क यहाँ के नज़ारे सच्ची बहुत ही खूबसूरत है।

पर में बहुत ही सुकून मिलने वाला है बहुत ही मजे आते है ।